बगल में और भी बहुत सारी सामने रखी हुई हैं।

यहां पे बड़ा सा हॉल का दृश्य दिख रहा है।

बगल में बहुत सारी टेबल लगाए हुए हैं।

बगल में गाड़ी लगाई हुई है गाड़ी वाइट कलर की है।

यहां पर घर का दृश्य दिख रहा है बड़ा सा फील्ड है।

आसमान पूरा साफ है धूप आ रहा है ऊपर से।